जो कि देखने में काफी सुंदर और मस्त है और कोई लड़का का फिगर दिखाया गया है और यह लड़का दुकान में बैठा है और बुक्स का दुकान है।

जोकि दिखने में काफी सुंदर और अच्छा है। जो की यह फिगर आई.एस.आर.आई राजेश बुक्स है। जोकि यहा पे बोहोत अच्छे-अच्छे बुक मिलते है। और याहा कम पेसे में बुक मिलते है।

क्यूंकि दिखने में काफी सुंदर और मस्त है और यह फिगर कोई स्कूल का दिखाया गया है ।

टीचर सर स्टूडेंट लोग पढ़ने के लिए आते हैं।

यह बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है और यह बैंक में बहुत लोग पैसा लेन देन किया जाता है निकाशी जमा।